जहाँ पे एक महिला चेयर पे बैठी है।

जिसमे पुरुष और महिलाएं दोनों है।

कुछ कार्स की दुकाने हैं कुछ स्टोर्स हैं।

इस दुकान पे कई पुस्तिये है जो रखी हुई है।

जो लोहे का है और जो दोनों तरफ से खुलता है।

जो काफी बड़ा और गोल आकार का है।

जिन्होंने ब्लू कलर की टी-शर्ट अ नीचे लाल और ब्लू कलर की लॉयर भी डाली हुई है।